हमें इस तस्वीर में एक घर का दृश्य दिखाया गया है।

सैलून के अंदर दो आदमी दिखाए गए हैं।

कुछ डब्बे लाल रंग के हैं रेलगाड़ी के पीछे एक पहाड़ है कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

दुकान में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजे दिखाई गई है।

टी_वी फ्रिज वाशिंग मशीन आदि जैसी कई चीजें रखी हुई है।

इस तस्वीर में हमें डेंटिस्ट के क्लीनिक का दृश्य दिखाया गया है।

पेशेंट ने लाल रंग की चुंदरी पहनी है।

तस्वीर में कई सारी लकड़िया रखी हुई हैं।

इतनी सारी लोहे की चीजे रखी हुई हैं।

बाजार के दाएं और बाएं दोनों तरफ सब्जियां रखी हुई है।

एक लड़की भी दिखाई गई है जिसने दो बैग पकड़े हुए हैं।

एक बड़ा सा दीवार भी लगा हुआ है।

घर के साइड में कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स भी हैं।

यह एक हार्डवेयर की दुकान लग रही है।

ये झंडे अलग अलग रंगों के हैं।

इन द्वारों की दीवार काफी ऊंची है।

एक इलेक्ट्रिक पोल भी है।

हमें इस तस्वीर में एक बड़ा सा द्वार दिखाया गया है जो कि काले रंग का है।

तालाब के पास कुछ बोट्स रखी हुई है।

और ज्यादातर कपड़े प्लास्टिक में पैक करके रखे हुए हैं।

एक हैंड सेनीटाइजर रखा हुआ है।

मैदान में कई सारे फौजी खड़े हैं।

ये तस्वीर देखके ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई कपड़ों की दुकान है।

साबुन तेल आटा जैसे कई सारी चीजें रखी हुई है।

इन झाड़ूओ को बेचा जा रहा है।